नमस्कार! पिछले ट्यूटोरियल में हमने डेटा चुना और हमने सफलतापूर्वक अपने पेज पर डेटा दर्शाया
चलिए मैं आपको यहाँ इस पेज पर वापस ले चलता हूँ हम देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक कार्य कर रहा है
हमारा सारा डेटा यहाँ हमारे पास है
अगली चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे कहीं बताएँ कि प्रयोगकर्तायूजरखुद डेटा डाल सकता है और विस्तृत कर सकता है
यह करने के लिए मैं connect include के सिवाय अपने पेज के सारे कोड डिलीट कर दूँगा
यदि मैं अपने डेटाबेस से नहीं जुड़ता हूँ तो यह कार्य नहीं करेगा
यहाँ जानने के लिए काफी सारी और कुछ अन्य चीज़ें हैं
मैं firstname lastname जन्मतिथि और gender या तो male या female को रखूँगा
यहाँ नीचे मैं फॉर्मformबनाऊँगा
यह एक html फॉर्म होगा अतः हमें अपने टैग्स को शुरू और अंत करने की आवश्यकता है
हमारा actionएक्शनmysql dot php होगा और method post होगा
यहाँ हम एक फॉर्मformबनाएँगे जिसमें प्रयोगकर्तायूजरनाम दर्शा सकता है
नाम के लिए हम अपना surname इस्तेमाल करेंगे
आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरणस्वरुप ढूँढने के लिए आपकी जन्मतिथि या gender
यह आपकी मर्जी है
आप ढूँढने के लिए 2 फील्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं
मैं अब आपको दिखाऊँगा कि कैसे 2 फील्ड्स इस्तेमाल करें जिससे कि आपको पता चले कि यह ज्यादा जटिल नहीं है बल्कि सरल है
यहाँ मैं firstname टाइप करूँगा और मैं text के प्रकार का एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा और इसका name firstname होगा
हम यहाँ एक ब्रेक बनाएँगे और lastname टाइप करेंगे
अगला हम एक और इनपुट बॉक्स पिछली लाइन को कॉपी और यहाँ पेस्ट करके बनाएँगे
अतः यह लाइन बिलकुल वही है किन्तु firstname के स्थान पर हम lastname टाइप कर रहे हैं
हम input type equals submit टाइप करेंगे और इसकी valueवैल्यूहोगी get data
अतः हमने firstname और lastname और submit बटन ले लिया है
यदि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ हम देख सकते हैं कि firstname और lastname दिखाई दिया
मैं इसे अभी के लिए डिलीट कर दूँगा और यह करने के लिए मैं जाचूँगा यदि submit बटन दबाया गया है
यह करने के लिए मैं पहले submit बटन को नाम दूँगा submit
फिर मैं if स्टेटमेंटstatement में टाइप करूँगा if dollar underscore post submit
यदि submit बटन दबाया गया है तो ब्लाक शुरू करिये
यह कोड का ब्लॉक है जिसको निष्पादित करना है और हम अपना ब्लॉक वहाँ समाप्त करते हैं जहाँ हम इसे समाप्त करना चाहते हैं
यह यहाँ इस कर्लीcurly कोष्ठक के बाद है क्योंकि यह यहाँ हमारे while स्टेटमेंटstatementका एक भाग है
वास्तव में इसके लिए हमें हमारी while स्टेटमेंटstatement की आवश्यकता नहीं है किन्तु फिर भी मैं इसकी खातिर इसको रखूँगा
मैं अब grab post data और dollar firstname टाइप करूँगा
अतः यह dollar underscore post firstname है और फिर मैं lastname टाइप करूँगा
मैं firstname को कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पेस्ट करूँगा और इसको lastname में बदल दूँगा
अतः हमें हमारा firstname और lastname मिल गया
मैं echo और यह सूचना record for firstname टाइप करूँगा दूसरे विचार से चलिए इसे अभी नहीं करते हैं
मैं यहाँ सीधे अपनी क्वेरी पर जाऊँगा
यदि आपको याद हो मैंने वर्णन किया था कि आप जो चाहें वो डेटा विशिष्ट रूप में बता सकते हैं
इसके लिए मैं select star from people where firstname equals alex and lastname equals garrett टाइप करूँगा
मैंने यह इस क्वेरी के भाग के अंदर जहाँ हम चुन रहे हैं नहीं दर्शाया है
मैंने इसे अपडेट में दर्शाया है जहाँ हम अपडेट कर सकते हैं where the firstname equals alex and the lastname equals garrett
अब हमें जो कुछ भी हमारे टेबलतालिकासे चाहिए हम यहाँ चुनेंगे और हम कहेंगे सबकुछ सेलेक्ट करो जहाँ हमारा firstname alex से लेकर lastname garrett है
यदि हम यहाँ अपने डेटाबेस को देखें हम अपने firstname के लिए खोज रहे हैं और उसको alex से मिला रहे हैं सरनेम खोज रहे हैं और उसको garrett से मिला रहे हैं
हम यहाँ डेटा की यह पूरी रोपंक्ति चुन रहे हैं जो अभी गुलाबी रंग से चिह्नांकित है और हम यहाँ से पूरा डेटा चुन रहे हैं
जन्मतिथि से लेकर gender मेरी id से मेरा firstname और lastname तक
अतः हम समझ चुके हैं कि यह इस समय केवल एक ही रिकार्डअभिलेखचुनेगा अतः हमें id से ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है
लेकिन फिर भी मैं इसे ऐसे ही रखूँगा क्योंकि यहाँ केवल एक ही रिकार्डअभिलेख है
ऑर्डरorder करना कोई विषय नहीं हैअतः हम इसे अभी इसी तरह से छोड़ सकते हैं
अच्छा तो हम अपना लूपloop रन कर रहे हैं हम यहाँ डेटा के प्रत्येक भाग को चुन रहे हैं और हम male को male में और female को female में बदल रहे हैं
हम इस क्वेरी पर आधारित अपना डेटा एकोecho कर रहे हैं क्योंकि यह डेटा आधारित क्वेरी मेरे फर्स्टनेमfirstname और सरनेमsurname के लिए विशिष्ट है
फिर हम यहाँ केवल firstname और lastname को एकोechoकरने जा रहे हैं जो हमें मिला है जो मेरा फर्स्टनेमfirstnameऔर lastname है लेकिन यहाँ alex को firstname में बदल कर जोकि यहाँ है
अब यह पुनरावृत्ति है यह यहाँ पर दोहरा वेरिएबल है
हमारे पास firstname है और ऐसे ही यहाँ है मैं इसे इस तरह नाम दूँगा firstname underscore form और lastname underscore form
हम वहाँ से चुनेंगे जहाँ firstname इसके बराबर दर्ज किया गया है और lastname जिसे हमने lastname form के बराबर दर्ज किया है
अतः यह डेटा है जो हमारे फॉर्म से आ रहा है
अतः यदि मैं अपने html फॉर्म में alex garrett टाइप करूँ और उसे जमा करूँ तब यह alex के बराबर होगा और यह garrett के बराबर होगा
हमारी क्वेरी केवल एक उत्तर देगी क्योंकि इस समय हमारे पास केवल alex garrett नामक एक ही आदमी है
अतः यह alex garrett के लिए पूरा डेटा लेगा और male या female के लिए जाँचेगा और फिर यह विशिष्ट सूचना एकोecho करेगा
अतः यदि मैं यहाँ आता हूँ और अभी रिफ्रेशrefreshकरता हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई भी डेटा इन फॉर्म वेरिएबल्स में नहीं दिया गया है
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह खाली है इसलिए हम people से star इस कंडिशनcondition पर चुन रहे हैं कि where the name equals to nothing and the lastname equals to nothing
इसने इस समय कोई भी डेटा नहीं दिया क्योंकि हमें अपने firstname और lastname में असली आदमियों के नाम मिले हैं
फिर भी अब मैं बिलकुल पूरी तरह से क्रम रहित नाम टाइप करूँगा
तो चलिए लिखते हैं david green और गेट डेटा पर क्लिक करते हैं और कुछ भी नहीं हुआ ठीक है
यदि हमारे पास यहाँ अंत में एक एररerrorसूचना हैयह हमारी क्वेरी यहाँ पर लिखी हुई है मैं लिख सकता हूँ or die mysql error
मैं यहाँ वापस जाता हूँ और लिखता हूँ david green और गेट डेटा पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास कोई भी एररerrorनहीं है
ओह हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि sql कोड कि संरचना सही है और इसलिए हमें कोई भी एररerror नहीं मिली
मैं इसे केवल जाँच रहा था
चलिए अब एक नाम हम मानते हैं जो हमारे डेटाबेस में है
चलिए alex garrett लिखते हैं और हम get data पर क्लिक करते हैं
हम यहाँ दर्शाया रहे हैं alex garrett was bron blah blah blah and is male
चलिए dale garrett टाइप करते हैं और get data पर क्लिक करते हैं और हमें डेटाबेस से यह जानकारी मिल गयी
अतः आप देख सकते हैं कि अपने डेटा में फॉर्म सम्मिलित करने के लिए यह काफी उपयोगी है
मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और अगले भाग में चलता हूँ जहाँ मैं बताऊँगा कि कैसे इस पद्धति का उपयोग करके रिकार्ड्सअभिलेखों अपडेट करें
अब तक आपमें से काफी यह करने के लिए खुद से सक्षम होंगे किन्तु फिर भी मैं आपको यह और इसके साथ ही कुछ अन्य उपयोगी चीज़ों के बारे में बताऊँगा
ठीक है तो जल्द ही आपसे मुलकात होगी मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद